इसका नाम मदन बुक डीओ है यहाँ पर बहुत सारे समान दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और जो की जिसके हाथ मे एक हरे रंग का बॉल है और इसमे दवाई भरी हुई है जो पेड़ों को दे रहा है।

और ए.टी.एम. के बाहर एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है जिस पर एक व्यक्ति भी है।

गेट खुला है और गेट के उस साइड कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक पार्क का रोड दिखाई दे रहा है जो की भिन्न प्रकार के टाइल्सो से बना हुआ है और चारों और हरियाली है चारों और पार्क के जाली लगी हुई है।

यहाँ पर दो-तीन घर भी दिखाई दे रहे है और यहाँ पर कुछ मैदान में हरी-भरी घास भी लगी हुई है।

यह एक मंदिर का नजारा है जो की ऊपर का नजारा है बहुत ही खुल्ला महोल है।